में शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा फंक्शन हो रहा है और मुझे लाखों लोग मुझे लाइन में चलते हुए नजर आ रहा है।

ऑनली फिर गर्ल्स और दरवाजे पर भी लिखा गया है वेलकम टू ग्रेस ब्यूटी पार्लर ।

जिसमें एक मार्केट दिख रहा है और इस मार्केट में कई सारे फर्नीचर्स दिख रहा है और टॉयलेट के समान सब दिख रहा है मुझे।

उनके जो से बनाया गया है और--

इस पिक्चर को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा हैं कि ये एक लाइब्रेरी है जिसमे बहुत सारे बुक पड़ा हुआ हैं बुक केवल साईड में नहीं बल्कि ऊपर भी पड़ा हुआ है और इसमें बैठे कई सारे लोग नजर आ रहा हैं।

बात पुरूष और जो सामने वाला दीवार है वो शिशा से बनाया हुआ है।

मुझे इसमें बड़ा सा लाल रंग के स्तूप टाइप का पीलर नजर आ रहा है।

इसके सामने मुझे देख रहा है बाबा रामदेव कि बड़ा सा फोटो ।

आ डिजाइन किया गया है। मुझे कई सारे लाइट्स बलब्स दिख रहा है और वहा मे लगाए हुए मुझे आ कई सारे टेबल फैन सब दिख रहा है।

का पोस्टर नजर आ रहा है उनका सारा खिलौना।

टेबल के ऊपर मुझे एक टिफिन और के अंदर दिख रहा है फिर से छोटा सा और मिरर जहां कई सारे स्नैक्स हैं और टेबल दिख रहा है और--

जो रंग बिरंगी रंग बिरंगे कपड़े पहने पहने हुए हैं।

मुझे इसमें कपड़ा का दुकान दिख रहा है और--

रंग बिरंगे कपड़े सब मुझे नजर आ रहा है और बाकी पड़ा हुआ कपड़ा सब नजर आ रहा है।

सा मुझे नजर आ रहा है जो उधर पाइप के ऊपर टीन नजर आ रहा है और कई सारे व्हाइट रस्सी नजर आ रहा है।

दो स्टोरी वाला मुझे बड़ा सा दुकान दिख रहा है जहां में कई तरीके के सामान बेच बेचके और मुझे साइड में स्टोर दिख रहा है जहां --

लोग घूमते फिरते हुए नजर आ रहा है मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग में कई सारे --

मुझे इस पिक्चर को देखके ऐसा लग रहा है कि यह स्टेशन है। मुझे तीन बन्दा दिखाई दे रहा है और मुझे एक बस दिख रहा है जो की लाल रंग और ग्रे रंग का दिखाई दे रहा मुझे।

कई सारे चेयर दिख राहा है और दो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है और कई सारे इलेक्ट्रिक पोल्स दिख दिख रहे हैं और मुझे --

और दो बड आ दो गेट नजर आ रहा है एक बड़ा सा गेट और एक छोटा सा गेट ।

इसमें मुझे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड नजर आ रहा है।

उसके ग्राउंड के पीछे मुझे नजर आ रहा है एक बड़ा सा स्टेडियम और उनके अंदर कई सारे चेयर चार बड़े बड़े लाइट बल्ब जलते हुए।

स्विच बॉक्स लगाया हुआ है स्विच बॉक्स में काले रंग की केबल लगाया हुआ है।

बड़ा सा पोस्टर जहां लिखा गया है बस्तर डेयरी फॉर्म ।

लाल रंग का है और सफेद रंग का और जो बिल्डिंग है वो ग्रे कलर से बनाया हुआ है वो--

इस बिल्डिंग की छत ढलाई कर रहा है और इसमें मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा है ओ--